चेयर लगा है कलरफुल चेयर है।

मस्जिद या फिर मंदिर या फिर कहीं का --

काम कर रहे हैं यहाँ बहुत बड़े-बड़े बोरे में सामान है सामान को जे_सी_बी से उठाया जा रहा है ये बहुत भारी होंगे अभी जे_सी_बी उठा रहा है।

यहाँ पे मीना बाजार या मेला लगा हुआ है या दुकान है यहाँ पे हर आइटम पंद्रह रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे चान का नाक का बाल तक का किलिप --

हर आइटम पंद्रह रुपए में मिलता है।

श्री शांति रसिकलाल जैन धर्म लिखाया-लिखाया हुआ है श्री शांति मुरली जी गुरुमंदिर ट्रस्ट लिखाया हुआ हैं ।